आसमान चमक रहा है पेड़ लगी हुई है पेड़ो पर रोशनी पड़ रही है कुछ बीच मे पत्थर ढला हुआ है जमीन पर घास लगा हुआ है एक बाउंड्री है जो काले कलर की है।

और एक कामीटि कलर की रोड डली हुई सामने एक सफ़ेद कलर की बाउंड्री है और कुछ बगल मे भी पेड़ लगे हुए है कुछ घर बने हुए है।

सामने एक टेबल रखी हुई है जोकि स्लेटी कलर की है और एक काऊंटर रखा हुआ है जोकि सफ़ेद कलर का है एक डेब्बा भी रखा हुआ--

एक टेप भी रखा हुआ है जमीन पर कुछ पत्ते भी डले हुए कुछ बॉक्सेस भी रखे हुए।

सामने एक ट्रक कि साइड की लाइट जल रही है उपर भी कुछ टिने लगी हुई है एक खंबे लगे हुए है और एक डिवायडर बना हुआ है जोकि सफ़ेद और --

पीले और काले कलर का है। कुच्छ खंबे और लगे हुए है ट्रक का रंग सफ़ेद कलर का है और लाल कलर की लाइटे जल रही--

कुछ एक पहाड़ सा बना हुआ है और कुछ पेड़ भी लगे हुए है। गार्डन मे पानी भरा हुआ है। एक रेलिंगसी लगी हुई है जोकि बंदी हुई है।

एक पहाड़ है और उसपे बहुत सारे अ अ अ पेड़ लगे हुए है इधर भी कुछ पेड़ लगे हुए है।